इ एगो फल के दुकान बा आ इहा बहुत ज्यादा फल बिकाता।

और हीया एगो टंकी भी बा जे पर पोस्टर सटल बा फिलिम के।

यहाँ यहाँ रात के समय भईलबा और यहाँ दुगो लाइट जलाता।

ई एगो टेक्टर बा जेकर पीछे एगो हल लागल बा।

आ हीया बहुत ज्यादा पेड़ बा लागाता की जंगल में बा।

यहाँ एक बोर्ड बा जोन की बहुत लम्बा बा यहाँ एगो एसी बा यहाँ एगो पंखा बा यहाँ बहुत ज्यादा डेस्क बा।

जोन यहाँ घर बनावता ट्ठेका पर।

इ एगो अ वाटर पार्क होव जहां बहुत ज्यादा झूला भी बा--

अय्या बहोत ज्यादा पानी बा हमनी के बहुत मस्ती केनी के जब गर्मी होयला तब--

हाई एगो में बा प्लेट में बिरयानी भी रखल बा एगो जग बा एगो ग्लास बा।